ये एक पुराने मोहल्ले वाली कोई जगह है जहां पे छोटे-छोटे घर पड़े बने हुए हैं और बाहर एक औरत कपड़े लटका रही है।

और ये वो ट्रक है जिसकी हैंडल से सामान उठाए जाते हैं जैसे दरियाओं के किनारों से पत्थर उठाने के लिए जो ट्रक ट्रक जाते हैं ये वो हैं आसपास बहुत सारे बंदे हैं।

ये वो जगह है जहां पे पौधे उगाए जाते हैं ठीक है इसमें जमीन पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर- सुंदर इसके साथ एक दरख्त है दरख्त का तना थोड़ा मोड़ा हुआ है।

इस दरख्त के बिल्कुल नीचे एक गमला नजर आ रहा है जो कि थोड़ा पुराना है लेकिन उसमें पौधा जो लगा हुआ है वो काफी अच्छा है।

इस तस्वीर में दो अ बंदे बैठे हुए हैं एक ने अनके लगाई हुई है उसकी शायद नजर कमजोर है और दूसरे ने नहीं लगाई हुई दोनों की मूछें है।

इसमें जो एक तरफ के डब्बे या कैमर बने हुए हैं वो भूरे रंग के हैं दूसरी तरफ के सफेद रंग के हैं बहुत सारे लड़कियां लड़के मिलके इस पे काम कर रहे हैं ।

बहुत सारी ढेरों सारी प्लेटें हैं सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो जिसने सिर्फ बनियान और ट्राउजर पहना है।

काले काले रंग के बहुत ही सुंदर सोफे पड़े हुए हैं पीछे एक अ भूरे रंग का भी कुर्सी पड़ी हुई है और ग्लास के डिबे हैं जिनमें कोई सामान नहीं रखा हुआ।

इस जगह में एक लाल रंग का कंटेनर बना हुआ है जिसके ऊपर शीशे की दीवारें हैं।

और पीछे भी बिल्डिंग है और हरे-भरे दृहतें हैं और बहोत ही सुंदर सी जगह है और जूते पड़े हुए--

और सामने को पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स और लिखे हुए हैं जहां पे खाने पीने की चीजें हैं केवल कुछ ही व्यक्ति इधर खड़े हैं।

और बहुत सारी साइकल खड़ी हुई है और साथ में बहुत सारे पौधे हैं और एक पुरानी सी बिल्डिंग है जो अभी तक पूरी तरह से पड़ी नहीं है।

साथ में एक तरफ बहुत सारे फूल है पीछे बिल्डिंग्स है ।

ऊपर टार्क लिखा हुआ है और कुछ नंबर लिखे हुए हैं जैसे कि तीनसों चालिश और पचास और बिल्डिंग में सामने ए_सी लगे हुए हैं।

एक तिकोन का निशान बना हुआ है और पौधे लगे हुए हैं जो थोड़े मुरछाए हुए हैं पत्तों का रंग थोड़ा सा पीला हुआ है और नीला बैनर है।